इस फोटो में हम देख सकते हैं शायद यह कोई मैकेनिक की शॉप दिखाई दे रही है। आप --

तो इस फोटो में हम देख सके हैं यो गुप्ता ट्रेड्स के नाम का कुछ लिख रखा है यू प्लाईबोर्ड औ--

खाली पड़े हैं और खेत में घने पेड़ दिखे खेतों में अलग अलग--

नीचे भी काफी पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं घास स दिखाई दे रहा है।

तो इस फोटो में हम देख सका हैं यो एक आदमी है जो काम करे लाग रहें का शायद--

आप देख सकते हैं शायद इसकी न्यू ओपनिंग हुई है क्योंकि कुर्सी भी बिल्कुल नई दिखाई दे रही हैं और इसमें आप देख सको ब्लैक और येलो कलर के--

उर्दू में कुछ लिखा हुआ है काफी बड़ा गेट दिखाई दे रहा है अंदर से ये--

इस फोटो में हमने देख सकते हैं चोपड़ा स्टील के नाम से कोई --

दुकान दिखाई दे रही है और आप यहां देख सकते हैं बाहर की तरफ टीने वगैरा डली हुई है और काफी आदमी है जो बैठे हुए शायद--

यहां पर स्टील के अ सामान वगैरा मिलते हैं जो घर में यूज --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

छत पे सलीरीओ के जल डाले हुए हैं और--

ये सीमेंट का मसाला बनाकर छत पर डाल रहे हैं शायद--

तो इस फोटो में हम देख सके है यह कोई दुकान दिखाई देवे है जिसमें लोहे की--